शौचालय दिखाई दे रहा है इसके ऊपर की ओर एक बैनर लगा हुआ है जिसमें सभी को किसी चीज की बधाई दी जा रही है नीचे की ओर कुछ लोग दिखाई दे रहे है शौचालय में--

व्हाइट स्टोन है वाइज व्हाइट टोन पाउडर है एवरयूथ का स्क्रब दिखाई दे रहा है और कुछ लीपबाम्स है न्यू ईयर में--

उनके साथ मे एक बच्चा आया हुआ है पास मे वो भी दुकान दिखाई दे रही है एक ज्वेलर्स की दुकान दिखाई दे रही है और कुछ रिटेल सामान की दुकान दिखाई दे रही है बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है बाहर--